जय हो भगवान जी प्रणाम। भगवान जी का फोटो बढ़िया है। मंदिर खुब बढ़िया बनल है। ई वाला मंदिरवा लगा हे ना हई का ओहां वला।